चेयर पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं।

टेबल के अगल-बगल लगी हुई है और इन टेबलों पर मुझे--

जोकि नए नए हैं और अलग अलग रंगों की है जैसे कि सफेद और काला और ऑरेंज भी --

बहुत सारी चेयर दिख रही है जो काले रंग की है और मुझे ए_सी और पंखा भी दिख रहा है।

बहुत सारे कोल्ड्रिंक के अ बोतल रखे हुए हैं और पानी के बोतल भी जो कि अलग अलग रंगों के हैं।

यहाँ पर मुझे बहुत सारी गाड़ियाँ नजर आ रही है इस बड़े से रोड पर और मुझे --

जोकि चलकर जा रहा है और मुझे पीछे की तरफ --

बहुत सारी और मुझे कुछ बाइक भी दिख रहे हैं जोकि खड़े हैं।

और मुझे बहोत सारी बाइक दिख रही है पीछे के तरफ और बहोत सारी ट्रक और गाड़ियां भी दिख रही हैं।

जो की गुलाबी रंग का हैं और दूस पीछे के तरफ बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ दिख रहें हैं।

और दो बड़े लोग दिख रहे हैं जो कि झंडे के अगल बगल खड़े हैं और बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं।

यहाँ पर मुझे एक बड़ा सा पार्क नजर आ रहा है जो काफी खाली है और मुझे --

बहुत सारे घास नजर आ रहे हैं और पतला सा छोटा सा रास्ता भी नजर आ रहा है और बेंच भी नजर आ रहा है।

अ कवर से ढकी हुई है और मुझे --

और इस पर आधा अधूरा खाना बचा हुआ नजर आ रहा है।

यहाँ पर मुझे एक बड़ा सा रोड नजर आ रहा है मुझे एक पेट्रोल पंप भी नजर आ रहा है।

बहोत सारी फोटो नजर आ रहे हैं जो की आइसक्रीम के हैं और ऊपर की तरफ बने हुए हैं।